एक बड़ा सा बिल्डिंग है जिसके नीचे एक बैंक है जिसका नाम है फ़ेडरल बैंक और बगल में --

ढांचा बहुत ज्यादा ही खराब --

ऊपर में कोई रेस्टुरेंट है जिसके नीचे दो गाड़ी पार्क की है और दो बाइक पार्क किये हुए है और उसके आगे एक जार --

यह एक डोसा है जो कि अंतरिक्ष में बहुत का मुख्य पदार्थ है।

यहाँ पे बच्चे पढ़ने आते है और यहाँ पे दोनों साइड में से पौधा रोपे गए हैं।

समय देखा जा रहा है जहाज़ के ढांचे का कुछ है जो एक--

बहुस्मारक बने हुए हैं। एक बहुमंजिला है जिसके आगे बहुत सारी ट्रक खड़े हैं।

ये लकड़ी का बना हुआ है जो अभी पेण्ट नहीं किया हुआ है जो कि अभी सायद पूरी तरह से --

यहाँ पे योगा चला। यहाँ पे यहाँ पे बोहोत सारे --

यहाँ एक पावर प्लांट है जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है जहाँ पे पावर इंजन रहता है ।

पता है ये सब डेंजर जोन होते है ।

यह एक दुकान है जो की गोपाल जी ऑटो स्पर्स है ये शॉप जहाँ पे बहुत सारे इंजन ऑइल रखा हुआ है ।

पर्यटक श्रद्धालु लोग खड़े है शायद गंगा नहाने के लिए ।